इस फोटो में एक बहोत बड़ा रेतीला ग्राउंड दिख रहा है।

उसमें बहुत सारी आदमी बैठे हैं।

एक नीला आदमी भी खड़ा हुआ है।

इस फोटो में एक वाटर पार्क दिख रहा है।

स्विमिंग पूल में पानी है।

एक नीला कलर का एक सफेद कलर का एक सोने के कलर का --

पीछे दीवार पर गुलाबी कलर हो रहा है।

इस फोटो में एक आदमी दिख रहा है।

और बहोत सारे सफेद खट्टे रखे हुए हैं।

नीचे कुछ लोगों ने नीले कलर का टेंट डाल रखा है।

मंदिर की डेकोरेशन हो रही है।

ऊपर लाइट लगी हुई है साइड में जिम की मशीन रखी हुई है।

उसमें बॉक्स बने हुए हैं लकड़ी के--

और टीन पड़ी हुई हैं नाल खड़ी हुई है।

और पीछे भी एक घर है।

इस फोटो में एक मंदिर बन रहा है।

बाहर बहुत सारे टोल्ले पड़े हुए हैं।

खंभे पर केबिल लग रहा है।

और यहां पर अपनी ग्राउंड में घास रही है।

यहां पर काली पन्नी के अंदर पेडे रखे हैं और कुछ वैसे पेड़े रखे हैं।

और यहां पे पीस पे पहला कलर हो रहा है।

इसमें एक छोटा सा जंगला भी है।

यह एक कंप्यूटर सेंटर है।

उपर से झरना बह रहा है।

और ग्लव्स भी रखे हुए हैं। दो छोटीछोटी फूकनियाँ रखी हुई हैं।

इस फोटो में स्टेट बैंक ए_टी_एम है।

और हरि भाई चश्मे वाले लिखा हुआ है दीवार पर।

एक कन्नी रखी हुई है।

इसके अंदर नीले और सफेद कलर के खन्ने बने हुए हैं।

नीचे मैट बिछा हुआ है।

एक लाल कलर की बाल्टी रखी हुई है।

मुझे एक बैंक्वेट हॉल दिख रहा है।

ग्राउंड में घास जम रही है।

और यहां पे मेज लग रही है मेज में सफेद कपड़ा लग रहा है।

और यहाँ पर चुन्नी भी लगी हुई है जिसो सजावट कर रखी है।

इस फोटो में कुछ आदमी उस साइड को जा रहे हैं।

और दो पंखे लग रही है और शीशे से लग रहे हैं।

और पीछे दीवार पर सफेद कलर हो रहा है।

यह एक टेंपो जा रहा है।

एक पीली गाड़ी खड़ी हुई है।

नीचे नीले ला हरे कलर के मैट बिछ रहे हैं।

और पल्ली तरफ पीले कलर का खंभा लगा हुआ है।

यहां पे एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है।

एक लाल झंडा लग रहा है।

एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है।